इस दृश्य में हम देख पा रही है एक बहुत बड़ा सा हाल बना हुआ है जिसमें की देखिए बहुत सुंदर सा इसको सजाया हुआ है इसमें बहुत सारी खिड़कियां लगी हुई है खिड़ --

और सामने एक खंभा लगा है जिसमें लाइट भी लगी हुई दिख रही है। किनारे की तरफ ये लोहे की रेलिंग लगी हुई है।

इस दृश्य में हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक बहुत बड़ा सा हॉल बना हुआ है। जिसमें किनारे की तरफ से कुछ सीढ़ियां बनी हुई दिख रही हैं। सामने तरफ एक बड़ा सा काउंटर रखा हुआ है।

जैसा कि इस दृश्य में हम देख पा रहे है यहाँ पर देखिए यह बड़ी-सी मेज लगी हुई है। उसके ऊपर एक गैस चूल्हा रखा हुआ है और बड़ा-सा एक कड़ाव रखा है। वहाँ पर एक आदमी भी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा --

दृश्य में हम देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए ये एक चौड़ी सी सड़क है। सड़क के किनारे की तरफ बोहोत सारी दुकानें बनी हुई हैं। बोहोत सारे पोस्टर लगे हैं तथा यहाँ पर बिजली के खंभे भी लगे हुए हैं।

दृश्य में हम देख पा रहे हैं ये किसी रेस्टोरेंट का दृश्य है यहां पर देखिए बहुत सारी मेजे लगी हुई हैं और रंग बिरंगी कुर्सिया पड़ी हुई किनारे की तरफ ये जीना बना हुआ है और बहुत --

खिड़कियां लगी हुई दिखाई दे रही है बीच मे एक दरवाजा है। चर्च के पीछे की तरफ बड़े-बड़े से पेड़ भी लगे हुए हैं और एक बाउंड्री बनी हुई है जमीन पर हरी-भरी घास लगीं किनारे पर कुछ पत्थर भी पड़े दिखाई दे रहे हैं।

टे जल रही है यहां पर बहुत सारे आदमी तथा औरतें भी दिखाई दे रही है किनारे की तरफ देखिए कुछ खंभे भी बने हुए हैं।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

दृश्य में हम देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए ये एक दुकान है जिसके ऊपर बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ जनता डेरी यहाँ पर लाइट --

मीनारे बनी किनारे की तरफ बड़ा सा गुंबद बना है और चार मीनारे बनी हुई दिखाई दे रही हैं। यहां पर देखिए एक बड़ा सा पेड़ भी लगा हुआ दिख रहा।

दिखाई दे रहे हैं और बड़ा सा पेड़ भी लगा है बस के पीछे की तरफ। यहाँ पर देखिए बस पर लिखा है बदायूं डिपो ।